ये चित्र में हम मेजी देख सक्तों है के हम देख हम तीन चार गाड़ी खड़ी हुई दिखेली काला रंग की मोटर साइकिल भी दिखेंणी सामने पर रंग का छपरा दिखेणा। बड़ा उनके ऊपर--